ये एक हॉस्पिटल का अंदर का दृश्य लग रहा है जोकि अंदर में एक बड़ा सा कुर्सी रखा गया है।

यहां पे ऊपर में मेडिकल भी दिखाई दे रहा है जो की बोर्ड में लिखा भी है।

अंदर में भी बहुत सारे टाइल्स दिख रहे हैं और अंदर में लाइट जल रहे हैं और अंदर में बहुत सारे कुर्सी लगाया गए --

ऊपर में पंखे लगाए गए हैं और तार भी खींचे गए हैं और यहां पे दो तीन ऐ_सी भी लगाया गया है लाइट भी लगाया गया है।

यहां पे बहुत सारे नीचे में छह बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि सरस्वती माता बने हुए हैं एक जो कि हाथ में बीन लिए हुए हैं।

और अंदर में पोस्टर भी रखा गया है एक स्कैनर भी दिखाई दे रही है।

ऊपर में बहुत सारे पंखे लगे हैं और तार भी खींचे गए है अंदर में बहुत सारे बुक दिख रहे हैं।

यहां पे दरवाजा दिख रहा है गेट का ब्लू कलर से पेंट किया है।

ये कहीं कॉलेज का दृश्य है यहां पे बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है ये कॉलेज या कोचिंग या स्कूल लग रहा है।

एक होटल का दृश्य है जहाँ पे अंदर मे बहुत सारे लाल कलर की कुर्सी रखी गई है तथा टेबल रखी गई है।

पो रूम में शीशे लगाया गया है और अंदर में बहुत सारे लाइट लगाए गए हैं।

ये एक बैंक का अंदर का दृश्य है यहां पे अंदर में बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं।

और यहां पे बहुत सारे चोंगे लगे हैं तार खींचे गए हैं और ए_सी भी लगाया गया है यहां पे इमरजेंसी गैस भी रखा गया है एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जोकि पीला कलर के दिखाई दे रहा है।

जोकि देखने में काफी शानदार दिख रही है।

और ईटा में कुछ लिखा भी है यहां पे बहुत सारे ईट दिख रहे है ये कही ईटा भाटा का दृश्य है।

दो मूर्तियां दिखाई दे रही हैं मूर्ति को माला पहनाया गया है फूल से।

पीछे में जाली लगाया गया है जो की लोहे का दिखाई दे रहा है।

पूल में पाइप लगाए गए हैं लोहे के यहां पे छ पाया भी दिख रहा है।

एक किराना दुकान का अंदर का दृसय है जहां पे बहुत सारे सामान रखे गए हैं और यहां पे बगल में हरे कलर का तार भी टांगा गया है।